यह एक फर्नीचर शॉप है यहां हम यहां देख सकते है कि कुछ चीजों की फर्नीचर खुद देख रहे हो उनके सामने कांच का बड़ा फर्नीचर है और पीछे कुछ है लकड़ी के फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं।

आगे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं सामने एक व्यक्ति है जिसने नीली शर्ट पहन के खड़ा हुआ है आगे हमे कुछ वर्कर्स भी दिखाई दे रहे सामने एक रेड कलर की दरी दिखाई दे रही है।

यह एक बिल्डिंग का काम नीचे हो रहा है इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि ये भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है।

न् फ्रीज टीवी कूलर इयरफोन हेडफोन मोबाइलस वही सामना में एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसपे एक व्यक्ति बैठा हुआ --

यह एक मंदिर की फोटो है जहां पर हम देख सकते कुछ व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं ये एक मंदिर छोटा सा मंदिर है।

यह फोटो एक नदी की फोटो है जोकि हम इस शायद गंगा नदी की तरह लग रही है जिसके पास हमेने एक पुल दिखाई दे रहा है जिसे जो शायद सड़क बनाई हुई --

जो इधर बहुत सारे पेड़ पौधे भी--

कार्टून में फ्रिजें रखी हुई है सामने टीवीयो का स्टोर --

चारों तरफ हम देख सकते हैं कांच लगी हुई और टेबलें लगी हुई है वहीं हमें कुछ वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सैलून में काम कर रहे हैं सामने हमें दीवार पे एक ए_सी दिखाई दे रही --

यह फोटो किसी ग्रामीण लाले की एक घर की फोटो है जिसमें हम देख सकते है एक रेड कलर का बड़ा घर दिखाई दे रहा है और उसी के पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कार्य समझा--

यह फोटो एक रेस्टोरेंट की फोटो है ये फोटो रात में खींची हुई फोटो है सामने हम देख सकते हैं बहुत सारी टेबल लगी हुई है और --

इस मंदिर से एक टेबल लगी और उसके बाहर में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट है या फाइव स्टार होटल हो सकता है।

सामने लेडिज भी बैठी हुई है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है और उनके पीछे एक लाइट दिखाई दे रही है।

ऊपर ये खाने के प्लेट रखी हुई है इसमें हमें चावल दाल पनीर की सब्जी वहीं कुछ सलाद और एक गट्टे की सब्जी दिखाई दे रही है।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स है व इंस्टिट्यूट है जो मैकेनिक दुकान है जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा --

वहीं बजरी रखी हुई है वहीं सीमेट रखा हुआ है सामने में बिल्डिंग का कार्यकर्ता भी कुछ और व्यक्ति भी दिखाइ दे रहे हैं जिनमें से ने ये कलर की ड्रेस पहन रखी है।

कप पुरानी चाय केत अ प्लेट वीथ थाली और कुछ वै एक्सपेंसिव समान और भी है।

जहां बहार गाड़ी रिपेरिंग का काम चल रहा है यहां में हम देख सकते है एक व्यक्ति है जो गाड़ी पे प्लास्टर चढ़ा रहा है।

कोई व्यक्ति और दिखाई दे रहा है जो की गाड़ी के टायरों को सही कर रहा है वही सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि उन दोनों को देख रहा है।